इस फोटो में किसी पा की--

फोटो दिखाई दे रही है।

हैं। जहां एक व्यक्ति एक्सरसाइज --

एक ढाबा दिखाया गया--

दिखाई दे रहे है।

फोटो टंगी हुई दिख रही हैं।

फोटो दिखाई दे रही है।

वन फोरजी मालिक ढाबा के नाम से है।

एक व्यक्ति चट्टान पर बैठा हुआ दिख रहा है।

सारे झूले लगे हुए हैं बच्चे आनंद ले रहे हैं।

फोटो दिखाई दे रही है नदी के किनारे दो औरतें स--